इस फोटो में मुझे रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे ऑटो बाइक साइकिल दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे पेड़ दिखाई दे--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

इस फोटो में मुझे चाय की दुकान दिखाई दे रही है।

इस फोटो मे मुझे फ़ुग्गो की सजावट दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे स्कूल दिखाई दे रहा हैं।

ये फोटो में मुझे रूम दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे कुलर दिखाई दे रहा है।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

इस फोटो में मुझे छोटी सी मंदिर दिखाई दे र--